इस तस्वीर में सामने सलून दुकान दिखाय दे रहा है जिस के ऊपर बोर्ड पे नाम भी लिखा हुवा है दुकान का बाल दाढ़ी स्पा सलून--

इस तस्वीर में सामने बहुत सारे लोग खड़े हो कर है इनके पीछे एक ईमारत भी है।